जिसके अंदर दो पिलर नजर आ रहे हैं जो गोल गोल बने हुए हैं जिसका कलर ब्लैक और सिल्वर पट्टी टाइप में पड़ी हुई है।

सामने पेड़ नजर आ रहे है जो बड़े बड़े है।

सामने की ओर पेन भी लगे हुए है कुछ सिंगल वाले पीले डिब्बे में।

और ऊपर की ओर टिन सेट पड़ा हुआ है जिसके बीच में एक लोहे का पिलर है।

और एक सामने छोटी फ्रिज रखी हुई है छो अ बाकी फ--

दीवाल एक है जिसके ऊपर लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

सामने की ओर एक लाल कलर की रोड बनी हुई है।

इसके साइड में दो कूड़े के डिब्बे भी रखे हुए है हरा--

और बीच में बहुत सारे ईंटें भी पीछे वाली मैदान में पड़े हुए हैं।

पीछे की ओर छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं पेड़ एक दम आखिरी में लगे हुए हैं।

इसके अंदर एक टावर दम टा पीछे वॉल नजर आ रहा है।

जिसके आस पास जंगल जो हल्का हल्का है इसमें छोटे छोटे पेड़ भी निकले हुए हैं जंगली।

और बच्चों की टॉय भी हैं यहां पे बहुत सारे।

और घास भी निकली है छोटे पत्ते भी जंगली वाले निकले हुए हैं।

बहोत सारी ऑटो भी हैं यहां पे पीली अ हरी कलर की --

इसके अंदर जमीन में नीली और लाल कालीन बिछी हुई है।

कुछ पलेटे भी नजर आ रही है जो ब्लैक कलर की रबड़ वाली है।

आ ब्लैक कलर की टेबल है यहां पे स्टील वाली चारों साइड --

औऱ ज़मीन में पत्थर लगा हुआ है। दीवाल भी इसकी व्हाइट कलर की है जो नीले कलर की पट् --

इसकी जमीन में व्हाइट टाइल लगी हुई है और ब्लैक टाइल भी लगी हुई है।

ऊपर की ओर एक डिजाइन बनी है चौकोर में जिसके ऊपर त्रिशूल टाइप में डिजाइन बनी है।

और उसी के नीचे वॉल ईंटे जैसी दीवाल बनी हैं।

और नीचे की ओर गुब्बाडे बहुत सारे लगे है जिसको नीला और व्हाइट है।